जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग पिंक कलर कुछ व्हाइट कुछ ब्लैक पहने हैं।

यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं तथा एक पेड़ लगा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कुछ मध्यम आकार के हैं।

उसपे लाल रंग की एक पतली सी पट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ स्त्रियां और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़े से टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।